इसके चारों तरफ ग्रीन कॉलर की ग्रासेस है कछुए की पीठ कवर की गई है उसके दो हाथ हैएक मुह है चार हाथ है एक मूंह है।

ये एक मछली मार्केट है जिसमे कई तरह की मछलियां रखी हुई है यहां पर वेट कांटा रखा हुआ हैजिसमे बाट रखा हुआ है और एक महिला उसको साफ करके दे रही है सामने की तरफ़--

वह पर बैठा हुआ है सामने की तरफ बालटी रखी हुई है और एक मंदिर है वो सामने वो सारी महिलाएं बैठी हुई है।

एक हेयर सैलून है जिसमे एक बच्चा चेयर पर बैठा हुआ हैजिसके बाल खड़े है सामने की तरफ एक हेयर स्टायलिस एक बच्चे की हेयर कट कर रहा है सामने एक बॉटल रखी हुई है।

कुछ वक्ति टेबल पर बैठे हुए है सामने की तरफ पंखा लगा हुआ है और सामने एक व्हाइट कॉलर की बाल हैजिस पर ट्विलाइट जल रहा है।

ये कूलर की पंखडिया है जो कई तरह से बहुत सारी है सामने की तरफ राखी हुई है निचे जमीन पर राखी हुई है।

एक वक्ति पर्पल कॉलर की साइड पे बैठा हुआ है उन्होंने गॉगल्स लगाए हुए है सामने की तरफ़ देख रहा है पीछे कई बॉक्स नज़र आ रहे है कई रेखे नजर आ रही है।

और कुछ फोटोज नज़र आ रही है निचे फ्लौर ब्लैक है।

ऊपर ब्लैक कॉलर का हेट लगाया हुआ हैजिसने शूज भी पहने हुए है सामने की तरफ़ पहाड़ नजर आ रहा है ऊपर की तरफ़ आसमान नजर आ रहा है।

ऊपर आसमान नजर आ रहा हैएक नाव उलटी पड़ी हुई है साइड में एक और नाव है और कई तरह के ग्रीन शेड दिए है।

यह एक नदी है जिसके अंदर एक नाव पर कई सवारी बैठी हुई हैजिसम महिला एक व्यक्ति बैठा हुआ है सामने की तरफ सनसेट हो रहा है निचे बहुत सारा पानी नजर आ रहा है।